ये एक गाड़ीयों का शोरूम है यहाँ पर अनेक तरह की गाड़ियाँ मिलती हैं।

यहाँ पर अगल-बगल पेड़-पौधे भी हैं जो कि दिखने में बहोत अच्छे हैं|

यहाँ पर जमीनों पर घास भी उगे हुए हैं जो कि हरे-हरे हैं।

ये एक जूतों का दुकान है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जूते मिल रहें हैं।

ये एक मस्जिद थे जोकि देखने में अच्छा है इसके मीनारों को बहोत अच्छे से कारीगर किया गया है।